सुन्दर तस्वीर है और इस तस्वीर में शाम के समय को दर्शाया गया है यहां पे एक लाइट का टावर बहुत ही बड़ा रखा हुआ है वो ब्लैक कलर की है और उसके दोनों साइड से लाइट की तरिया गयी है वो भी ब्लैक कलर की है।

होल हैं होल मे बोहत सारे बुक्स रखी हुई हैं । ये बुक्स बहुत बड़े है और थोड़े से छोटे-छोटे भी बुक्स हैं इन सबको अलमारी मे रखा हुआ है और ये अलमारी का कलर जो है ब्लैक कलर की है और यह होल का जो ऊपर का कलर है वो व्हाइट है।

सुंदर झील है और जिसमे से नदी पानी आ रही है और यहाँ पे पानीयो का कलर एकदम ही व्हाइट है और उसके दोनों साइड से झाड़िया नजर आ रही है।

बोहत ही सुंदर तस्वीर है जहां पे दो बच्चे नजर आ रहे है वो लोग फोटो ले रहे है एक ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए है एक ने थोड़ी-सी येल्लो कलर के कपड़े पहने हुए है वो लोग दोनों बहोत छोटे है वो दोनों बहोत खुश है वो लोग तस्वीर ले रहे है।

जिसमे गजरा भी लगाया गया हैउन लोगो ने बहुत सारा इन्स्ट्रुमेंटस पकड़ा है यहां पे ये पूरा ये घर बहोत ही सुंदर से सजाया गया है और पेन्टिंग मे बहुत सुंदर-सुंदर---

ऊपर झाड़ियाँ है जो की बहुत बड़ी-बड़ी है वो भी नजर आ रही है नीचे का जो ग्राउंड है वो थोड़े से ऊपर नीचे हुआ वहाँ पे थोड़े से पत्ते गिरे हुए हैं बहुत ही ज्यादा सुनसान है यहाँ पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा है।

अंदर का हिस्सा जो है वो व्हाइट कलर की है। गेट मे थोड़ी-सी ग्रीन कलर की बोडर्स की गयी है और देखने में बोहत ही ज्यादा अच्छी भी लग रही है ।

ये पैर है जो की टूट-फूट गयी है इसमें बोहत ही ज्यादा प्लास्टरस लगे हुए है पीछे बैग-वैग रखी हुई है इसका एक टाँग नीचे और एक टाँग ऊपर हैइन्होंने जुराब पहनी हुई--